यह एक एस.बी.आई. बैंक का दृश्य है बहुत ही सारे लोग लाइन बहुत सारे लोग लाइन मे खड़े हुए है और बहुत सारे गाड़ियां लगी हुई है और एक वो औरत भी खड़ी है और सीढ़ी से कुछ लोग उतरते हुए जा रहे --

और साइड में डेंटल का पोस्टर ल --

यहाँ एक बहुत ऊँचा एक बिल्डिंग है जिसपे बहुत सारे खिड़कियाँ है जो की शीशा का लगा हुआ है और इसमे --

यह एक बहुत सुंदर नजारा दिख रहा है जो की रोड है रोड के किनारे मे बहुत सारे पेड़ पौधे है जो की खजूर ताड़ का है।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

इसमें एक बोतल पानी का बोतल भी --

एक रोड है जिसमें बहुत सारे जहां कोई बाइक से बाइक से लोग आ रहे है और टेम्पु कोई टेम ऑटो से आ रहे है और कुछ लोग साइकिल से लोग जाते हुए नजर --

यह एक क्लीनिक है जिसका नाम संजीवन क्लीनिक है।

सलून का है जिसमें बहुत सारे समान रखा हुआ है और कुछ लाइट लगा हुआ है।

यहाँ एक नदी है जिसमें कोई जाने-आने आने-जाने का सीढ़ी लगा हुआ है।

यहाँ एक प्लस टू का स्कूल गेट लगा हुआ है और साइड मे कुछ बहुत सारे पेड़-पौधे नजर आ रहे है।

कुछ लोग हाथ में थैला लेके अ जाते हुए नजर आ रहे है और बा बगल में कुछ पेड़ दिख --